कुछ हरे-भरे पेड़ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और एक कमरा दिखाई दे रहा --

सामने जो इमेज दिखाई दे रही है ये बहोत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। देखने से लगता है या तो ये किसी --